और चप्पल भी निकाली हुई है और जूते भी निकाल रखे हैं।

और पेंट की बाल्टी रखी हुई है।

कई सारी दुकान है। दुकान पर एक दुकान पर पेंट हुआ है पीले कलर का। एक बैनर रखा हुआ है। कई सारी ट्रे हैं।

बहुत सारे कट्टे रखे हुए है।

और बहुत सारी कुर्सी है।

हमे रिक्शा में कुछ समान रखा हुआ है।